यहाँ पे सफेद कलर के परदे का यूज़ किया गया है उसपे बीच बीच में हरे कलर के परदे लगाए गए है छोटे छोटे पौदे लगे हुए है जो बहुत ही प्यारे लग रहे है फूलो का यूज़ किया गया लाल पीले हरे कलर के फूल है।